पैदल भी चल रहा है आदमी पोल भी है बिजली भी है पेड़ भी है अशोक के |

शिवलिंग बनाया हुआ है एने बसहा बनाया हुआ है ।

पहाड़ है श्रीलंका का बुझा रहा --